है यहां पर एक घड़ी लग रही है।

ये एक दरवाजा है इ.सी.जी रूम है।

ये एक कैफ़े है यहाँ पर गमले रखे हुए है गमले में पेड़ लगे हुए है।

ये बोहोत सारे कप हैं एक कप ताश की डिजाईन में--

एक ने ब्लू टी-शर्ट पहनी है एक ने येल्लो एक ने व्हाइट एक ने फिर ब्लू और एक ने चेक और वो कुछ बना रहे है एक पास पिंक शीट --